इस इमेज में मुझे बहुत सारे बड़े-बड़े घास दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और मिट्टी कलर के हैं।

खाई दे रही है जो ग्रे कलर की है और ब्लैक कलर की है और कुछ कारपेट दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे कुछ सूखे घास दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी कलर के हैं।

इसमें बहोत सारी बैनर्स दिखाई दे रहे हैं जो बैगनी कलर के हैं जिसमें व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और एक रिबन दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं जो ऑरेंज कलर के है।

इस इमेज में मुझे एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जो हल्का ग्रीन कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक आधा घर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और रेड कलर का है।

और कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

इस इमेज में मुझे एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जो हल्का पिंक कलर का है।

और एक सोफा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और व्हाइट कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक रेस्टोरेंट का छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

इसमें कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है और येलो कलर की है।

इसना बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो खड़े हैं और एक सूरज दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है।

इस इमेज में मुझे कुछ आम दिखाई दे रहे हैं जो येलो कलर के है और ग्रीन कलर के है।

टोकरी दिखाई दे रहे हैं जो यल्लो कलर के है और ग्रे कलर के है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।